यह एक चर्च है और यह चर्च बहुत ही बड़ा है इस चर्च में बहुत सारे लोग क्रिस्चियन धर्म के लोग आते है प्रे करने के लिए यहाँ पे क्रिस्चियन धर्म की शादियाँ भी कराइ जाती है ।

कसब करते है। और यहाँ पे बोहोत ही ज्यादा मात्रा में भीड़ होती है। यहाँ पे बोहोत ही सस्ते दामो में सामान दी जाती --

यह एक कॉलेज है कॉलेज बहुत ही बड़ा है इस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और यहाँ पे काफी अच्छी पढ़ाई होती है ।

यह एक चिड़ियाँ घर है और यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है यहाँ पे जंगली जानवरों को भी रखा जाता हैं ।

मंदिर है और यह मंदिर बहुत ही बड़ा है इस मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करने के लिए यहाँ पर पूजा करने में काफी अच्छा लगता है यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ हैं इन्ही की लोग पूजा करते हैं।

बास्केटबॉल कब्बडी और भी बोहोत प्रकार के खेल खेलते है। यहाँ पे खेलने में काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग दौड़ने भी आते है।